लोग तरह तरह के एक्ससाइज कर रहे हैं। एक लड़का आईने के सामने खड़ा अपनी फोटो ले रहा है।

यह एक पोधों का स्टॉल है।

एक आदमी स्टॉल में खड़े पौधे दिखा रहा है और बेच रहा है। स्टॉल के सामने एक लाल कुर्सी रखी हुई है।

यहाँ पे कुछ और लोग और टीचर्स भी खड़े हैं ।

इस दृश्य में बहुत सारी ब बेनचेस मे लड़के बैठे हुए हैं और वो पेपरों की सहायता से कुछ आर्ट एण्ड क्राफ्ट का काम कर --

जिम में फर्स्ट एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन चल रहा है। बहोत सी ट्रॉफीया रखी हुई हैं और आस पास में बलून का डेकोरेशन है।